कुर्सियों और टेबल का रंग काला और गोरा है।

औरत एक्सरसाइज कर रही है।

छवि में एक नीले रंग का कारपेट बिछा हुआ है।

इमारत के बाहर एक बड़ा बोर्ड है।

दो लाल और सफेद रंग का लिखा हुआ है।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

डिन एक बड़ा पोस्टर है।

टमाटरो का रंग हरा लाल और पीले रंग का है।

इमारत में कई तरह की खिड़कियां है जो काले रंग की है।

छवि में ढेर सारे कुर्सियां और टेबल हैं।

जो पीले और सफेद रंग के हैं।

पेड़ पौधे पीले और हरे रंग के हैं।

और साइकिलें काले रंग की हैं।

स्क्रीन पर कुछ चल रहा है।

टूल काले रंग का है।

ऊपर की छत पर एक लाइट लगा हुआ है।

फुहारे का रंग सफेद है।

छवि में कुछ तरह के मोटरसाइकिलें भी हैं।

छवि में कुछ लकड़ियां खड़ी है।

कमरे के अंदर ढेर सारी गाड़ियां रखी गई हैं।

यह छवि खुले क्षेत्र का है।

यह छवि खुला क्षेत्र का है।

यह तस्वीर खुला क्षेत्र का है।

इमारत पोस्ट ऑफिस का है।

छवि में पीछे सजावट की गई है।

यह छबि एक बैग दुकान के बाहर का तस्वीर है।

पर्दे गुलाबी रंग का है।

मारस की दीवार का रंग सफेद है।

छवि में एक लाइट है लाइट सफेद रंग का है।

छवि में खुला मैदान है।

डब्बे के नीचे भूरा रंग का डब्बा है।

डब्बे में कई तरह के समान रखे गए हैं।

कमरे के दीवार का रंग सफेद है।

बोतल पर कई तरह के सामान रखे गए हैं।

कमरे में चूल्हा है चूल्हा काले रंग का है।

दो सफेद रंग के है।

आसमान में बादल है आसमान नीले रंग का है।

में एक छोटी इमारत है।

आसपास कई तरह के पेड़ हैं।

पर्दा सफेद और भूरे रंग का है।

सभी में गेट है।